ये तस्वीर में एक वाइट कलर का सामने में एक घर दिखाई दे रहा है यहां पे एक बैनर भी टंगा हुआ है और ऊपर में एक झंडा भी लगाया हुआ है और बगल में भी तीन तल्ला घर दिखाई दे रहा है।

और यहां पे किसी फंक्शन की तैयारी हो रही है यहां पे बहुत सारे लाइट भी लगाई हुई है और घोड़े जैसा भी कुछ बनाए हुए हैं और फूल भी नजर आ रहे हैं।

ढेर सारे लोग बैंड बाजा भी बजा रहे हैं और ढेर सारे लोग खड़े भी हैं और पीछे भी कुछ लोग हैं।

इस तस्वीर में एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

यहां पे ढेर सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

बल्टी और अंदर में ढेर सारे कुर्सी भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में रेड व्हाइट कलर की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें ढेर सारे बड़े बड़े ईंटे दिखाएं दे रहे हैं।

यहां पे अंदर में एक होल है जिसपे जहां पे दो लोग अंदर गए हुए हैं।

जिसने शूज पहने हुए हैं ब्लैक कलर के --

यहां पे लकड़ी के कुछ पार्ट दिख रहे हैं।

इस तस्वीर पे बड़े से गेट में कोलकत जल प्राप्त एकतारा लिखा हुआ है।

ढेर सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे ढेर सारे बालू भी दिखाई दे रहे हैं जो रेड कलर में थोड़े थोड़े दिख रहे हैं।

ट्रांसफार्मर के अंदर व्हाइट व्हाइट घर दिखाई दे रहा है जो वाइट वाइट कलर में है।

इसमे पत्ते भी दिखाई दे रहे है।

टिन सेट से बाउंड्री पूरी तरह कभर की गई है।

किराना स्टोर भी दिख रहा है जहां पे ढेर सारे--

इस तस्वीर में एक बैनर पे ट्रक ड्राइविंग स्कूल लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में क्रिश्चियन का सिंबल बनाया हुआ है।

यह रेक का कलर व्हाइट है।

इस तस्वीर में हमें ढेर सारी साइकल दिखाई दे रही है और उसके ऊपर कवर भी लगाए हुए हैं।

एक कार भी दिखाई दे रही है।

यहां पे ढेर सारे लोग कुछ बांट रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पे एक मॉनिटर की बोर्ड माउस और एक छोटा सा लैपटॉप भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

बांस लगे हुए हैं जो रस्सी के सहारे बांधे गए है।

जो ब्राउन कलर का है।

इस तस्वीर मे किसी घर का काम चल रहा है।

एक बहुत बड़ा हॉल जैसा कुछ है जिसमें सब रखे हुए हैं सब लोहे के पिंजरे और सामने का गेट व्हाइट कलर का ऊपर में एक लाइट भी लगाया हुआ है।